सजावट के लिए यहाँ परकप का इस्तमाल किया गया है और कुछ अच्छी वाली लाइट लगाई गई है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

में हम एक रास्ता देख पा रहे हैं। जहां पर हमें बहुत से लोग नाचते ढोल बजाते-जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे हम कई सारे मौसमबी रखे हुए देख पा रहे हैं कुछ खीरे भी यहाँ पर रखे हुए हैं वहीं हम दुकानदार के मुँह में मार्क्स लगा हुआ देख पा रहे हैं आस पास हमे और भी दुकाने दिख रही है।

उसने ऑरेंज वाइट ग्रीन रंग इस्तेमाल किया है वहीं उसने यहां पर एक और रंगोली बनाई है कुछ लोगों को भी हम यहां पर खड़ा देख पा रहें हैं।